और एक बूढ़े आदमी हैं जो बस पे चढ़ रहे हैं। बेग ले रखे हैं। एक झोला पिंक कलर है और उसका खिड़की का कलर है ब्लैक और पीछे पेड़ है।

और एक लोहा का गेट लगा हुआ है और बाहर एक बाइक भी खड़ा हुआ है और इस घर का कलर है व्हाइट कलर का है। सीढ़ियां हैं दो चार और फिर बोहत ही --